यहां पर एक डस्टबिन भी रखा गया है।

यह एक दुकान है और दुकान के बाहर में बहुत सारा पुतला भी रखा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारा घर भी है और यहां पर दो तीन पुल भी दिखा र र रहा है।

एक मंदिर है और यहां पर बहुत सारा आदमी और बहुत सारा लेडीज भी है।

यहां पर बहुत सारा आदमी है और यहां पर बहुत सारा लेडिस भी है।

यहां पर एक आदमी है और यहां पर एक बच्चा भी है।

और दीवार का कलर पीला कलर का है।

दुकान के बाहर में एक टायर है।

यहां पर गेट के ऊपर में बरनवाल सेवा सदन लिखा हुआ है।

और यहाँ पर एक कुर्सी भी लगा हुआ है।

बहुत सारा पेड़ पौधा भी लगाया गया है।

यहां पर तीन बस खड़ा है।

यह है एक दुकान है और इस दुकान का नाम बाबा चूड़ी स्टोर है।

यहाँ पर अलग-अलग रंग का चूड़ी है।

यहां पर एक टेबुल भी है और एक यहां पर कुर्सी भी है।

यहाँ पर बहुत सारा कार्टून में कुछ रखा भी हुआ है।

ये एक दुकान है और यहां पर अलग अलग प्रकार के नए मोबाइल भी रखा गया हैं।

यहां पर एक पंखा भी लगाया गया है।

यहां पर एक एल_इ_डी लाइट भी लगाया गया है।

यहां पर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

टेबुल के ऊपर में एक जेरॉक्स मशीन और एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे हैं और बहुत सारे टावर भी लगाए गए हैं।